और ऊपर डेकोरेशन वाले फूल लगाए गए हैं।

उसके पीछे एक ट्रक खड़ा हुआ है।

और उसके बाजू में एक ब्लू कलर की लाइट लगी हुई है।